यहां पर एक डॉक्टर का केबिन भी दिखाई--

इमेज में सामने यहां पर एक क्लासरूम दिखाई दे रहा है जहां पर बेंच पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं।

इस इमेज में यहां पर एक काले रंग की कार खड़ी दिखाई दे --

इस इमेज में यहां पर कुछ बॉक्स दिखाई दे रहे हैं जिनमें मछलियां रखी हुई --

यहां पर कुछ लोग यहां पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जो मछली बेचते नजर --

और यहां पर नीचे बहोत सारी पब्लिक भी खड़ी दिखाई दे रही है।

है ओ नीचे गमलों में शो प्लांट्स भी लगे दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर सामने एक ऑफिस दिखाई दे रहा है।

एक आदमी फ्रूट बेचता नजर आ रहा है और यहां पर देखिएगा कुछ बाइक्स खड़ी नजर आ रही है।

है जहां पर कुर्सी पर कुछ लोग बैठे सफेद कपड़े पहने हुए नजर आ रहे हैं।

कोई है और नीचे टाइल्स पे डिजाइन बनी दिखाई दे रही है।

इस इमेज में यहां पर एक जंगल का दृश्य दिखाई दे रहा है।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

और लाइटे भी जलती नजर आ रही है।